एक सुन्दर सा घर का सा सजावट जिसे देख कर हर किसी को सोने का मन करने --

आज भी बिहार में अस्सी परसेंट जनता बिहार की खेती पर ही निर्भर है।

सुबह-सुबह सूरज की गर्मी और एक सुन्दर सा वातावरण पे में धूप का आनंद लेते हुए स्वस्थ जीवन के लिए यह एक बहुत जरुरी और सजग उपाय है |

बचपन की वो पुरानी यादें बच्चीयों का वो गुड़िया-खिलौना।

ना जाने कितनो की उम्मीदे जुड़ी हुई रहती है इस रूम से।

जो जरुरत के सारे समानों को समेटे हुए हैं और अपने ग्राहक का इंतजार कर रहा है।

न इ आँख है न जाने किसको देख रही है।

आज के सांसारिक जीवन में इतना ज्यादा जनसँख्या हो गया है हर लोग अपने बाइक को हर लोग अपने निजी गाड़ी से ही कहीं न कहीं सफर करना चाहते हैं जिसके कारण यह --